हमें एक कच्चा रास्ता दिखाई दे रहा है यहाँ पर हम बोहोत सारी गाड़ियां भी रखी हुई देख पा रहे हैं हमें यहाँ पर एक बाइक वाला गेट से आते और एक बाइक वाला जाते दिखाई दे रहा है साथी हम यहाँ पर।